तीन आगे कुर्सी प बैठया है जो जो सफेद कपड़ा मे है और आगे कोई गमछों वमछों पर राख्यों है लाल रंग को और कोई धोला रंग को और पीछे चार भी सफेद कपड़ा म ही है और पिछला माला पर राखी है गले मे फुला की।

आगे खूब सारी भीड़ होरी है बम छोरा भी है आदमी भी है लुगाई भी है काफी सारा लोग खडया है उर।